और जैसे की यहां पे मैच खेलने लोग आते हैं।

और चमगादड़ के पंख भी फैले हुए है।

जिसके उस पार में झंडा फहराया हुआ हैं।

स्कूल है नृत्य सिखाने का जहां पे --